ये टाइटन की फास्टटैरेक की कसीयो की यहां पे हर कंपनी की वॉच मिलती है।

एक बंदा खड़ा है उसने मास्क लगा रखा है सामने से लेडिस आ रही है उसका--

किराने की दुकान है। बगल में एक बंदा बैठा हुआ है तिरपाल के नीचे।

पेंट करवा रखा है बलूंस लगा रखे हैं।

और साथ में मौलाना साहब खड़े है दो मौलाना इधर बैठे हुए हैं।

एक बंदा खड़ा हुआ है यहां पे दो गाड़ी है एक क्रिस्टा है और एक--

एक मेट्रो स्टेशन है बंदा खड़ा हुआ--

साथ में रखी है छोटे पेड़ हैं।

अंकल साइकिल में चल रहे है। पानी की टंकी है रिक्शा खड़ा हुआ है।

और बोतल वाइट एंड ब्लू मशीन रखी है एक प्रिंटर रखा है।

एक पैकेट डब्बा रखा है नीचे और अलग अलग है डब्बे रखे हैं --

दो बंदे खड़े है एक फोन पे बात कर रहा है। जींस पैंट पेहेन रखी है।

कुछ राजस्थानी का पुतले बनाकर रख रखे हैं।